टायर पड़े है ब्लैक कलर के बीच में कुछ ड्रम पड़े हैं सामने एक बोर्ड लगा हुआ है कुछ कपड़े टंगे हुए हैं यहां पर लोहे का सामान भी पड़ा है।

यहां सामने बालू गेट एयरपोर्ट्स का गेट बना हुआ है दरवाजे लगे हुए हैं।

ब्लैक कलर की और सफेद कलर की ऊपर लोहे के चद्दरें लगे हुए और उसी चद्दरों के ऊपर पंख लगे हुए हैं।

ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं मूर्ति के पीछे बहोत बड़े बड़े पेड़ है।

बहुत हरियाली है छोटी छोटी घास लगी हुई है और यहां पर--

बाहर के साइड कुछ होटल का मेनू कार्ड है उसके आगे दो मोटरसाइकिल खड़ी है।

और आगे एक बहोत ही बड़ी बिल्डिंग है जो दो तीन मंजिल ऊंची हैं उस बिल्डिंग के आगे बहुत सारी साइंकिलें खड़ी है लोग खड़े हैं इधर बहुत सारे पेड़ हैं।

वृक्ष उगे हुए हैं बीच में बिजली वाले खंभे लगे हुए हैं खंभों के ऊपर तार है और सामने एक बहुत ही --

यहां पर पानी वाले बहोत ही बड़ी बड़ी पाइपलाइन लगी हुई है।

और बीच में कुछ पैकेट रखे हुए है वो सफेद कलर के है कुछ तार है कुछ प्लास्टिक है इस ।

और आगे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रखा है ये शायद नदी के किनारे बैठे हैं कुछ पूजा करने के लिए इसलिए फल फ्रूट्स है।

और इधर झोपडी बने हुए हैं झोपडी के पास में छोटा सा कमरा बना हुआ है एक मोटरसाइकिल --